घड़ी भी लगी हुई है। सफेद रंग की दीवाल भी है।

अ बगल में एक टेबल रखा हुआ है जिसमें बर्तन भी हैं।

और सामने एक खिड़की भी है जो काफी सफेद लग रही है देखने में काफी अच्छा किचन है।

ये एक काफी बड़ा घर लग रहा है यहां पर गमले भी रखे हुए हैं और ये किनारे का दरवाजा सफेद लग रहा है।

ऊपर यहाँ पर बल्ब भी लगाई हुई है और बीच में एक झूमर भी है देखने में ये घर काफी अच्छा लग रहा है और सफेद रंग का ये घर है।

ये शायद मॉल ओल का सिस्टम लग रहा है यहां पर काफी भीड़ लगी हुई है।

एक लड़का लाल शर्ट में एक लड़का सफेद शर्ट में--

ऊपर पेड़ दिख रहे हैं आसमान बिल्कुल साफ लग रहा है।

ये किसी के गली का सीन लग रहा है जहां पर एक गाड़ी खड़ी है।

और यहां इंटरलॉकिंग की सड़क हुई है बनी हुई है।

यहां पर पेट्रोल पंप के लिए काफी सारा गुब्बारा लगाया हुआ है।

नीचे एक ए_टी_एम रखा हुआ है और ऊपर शायद सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का ब बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और ये मैदान बहुत बड़ा है काफी भीड़ भी लगी हुई है।

और यहां से काफी भीड़ लग रही है और ऊपर आसमान बिल्कुल सफेद लग रहा है और मौसम बिल्कुल ही साफ लग रहा है।

यहाँ पर पान सौ सात सौ रुपए का बोर्ड लगा हुआ है इसकी सेल का सामान है।

और एक पंडित जी जा रहे है जिन्होंने लाल कुर्ता पहेना हुआ है।